यह एक होटल का है जिसके बाहर कुछ आदमी खड़े हुए हैं।

उसके ऊपर बोर्ड लगे हैं साइड में भी दो चार बोर्ड लगे हैं एक आदमी है।

इसमें एक आदमी बैठकर मछली बेच रहा है।

उसके बगल में एक और बिल्डिंग दिख रही है जिसके ऊपर एक बोर्ड है बोर्ड पर एयरटेल लिखा है।

एक खाली जगह दिखाई दे रही है जिसमें कुछ घास फूस निकले हुए हैं।

सामने एक बिल्डिंग दिख रही हैं जो बहोत बड़ी और सुंदर है नीचे में दो बाइक लगा हुआ है।

यह एक स्कूटी की शोरूम है।

यह एक बिरियानी रेस्टोरेंट है यहां पर बहुत सारी कुर्सियां लगी हुई हैं।

पीछे बहोत सारी पेड़ दिखाई दे रहे हैं।